इस आर्गनाइजेशन का नाम कृति योगा है।

बहुत सारी जगमगाती लाइट लगी हुई है।

एक नई कार्टून में जस्ट फ्रीज़र लिखा हुआ है।

लड़की ने ब्लैक जींस और पर्पल टॉप पहना हुआ है।

यहां एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

दीवाल का पेंट उखड़ा उखड़ा लग रहा है।

यहां बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं।

बैठकर रिलैक्स करने के लिए काफी सारे बेंच लगे हुए दिख रहे हैं।

एक हरे रंग के बैनर में तंबाकू हानिकारक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

काफी परीक्षार्थी टेंशन में लग रहे हैं।

यहां एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसका नाम हंस ढाबा है।

दिवाल पे कुछ आधे फटे हुए कागज चिपके हुए हैं।

इन्हें लोहे के पिंजरे में रखा हुआ है।